एक ब्लू कलर की बस दिखाई दे रही है घर दिखाई दे रहे हैं एक दो तीन चार पांच लैंप लंप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने बहौत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और आजु-बाजु बहौत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही हैं रोड पर मोटर साइकिलें चलते हुए दिखाई दे रही हैं खम्बे दिखाई दे रहें हैं और बहोत सारे हैं।

इस इमेज में मुझे एक म-म -एक म-म-म बिल्डिंग दिखाई दे रही जो स्कूल या कॉलेज होगा जो की बहोत बड़ा है सामने एक गेट लगा हुआ --

हर इस इमेज में मुझे एक स्टाइल हेयर ब हेयर पी ओ आई एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है उसमें बहुत सारे लड़कों की फोटो चिपकी हुई हैं।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं और बहोत सारा उस बहोत सारे बाहर खोखे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर एक --

एक आदमी जो उसके साथ जा रहा है एक आदमी उसके नीचे बाजु से जा रहा है कारे दिखाई दे रहे है बहोत सारे आते जा --